बाहर में दो आदमी है खड़े--

ये एक स्टूडेंट रेस्टोरेंट है यहां पे चेयर है।

ये एक दवाई की दुकान है यहां पे बहोत सारी दवाई शब है।

ये एक कंप्यूटर क्लास लग रहा है।

गाय हैं यहां पे बहुत सारी।